चलो आज काली माँ के मंदिर में चलते है। बोहोत दिन हो गये। मंदिर हो आये।

मोहल्ले में एक जागरण था। वहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर आये हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन करें।

अरे आज तो यार अपने ग्राउन्ड में मेरे खयाल से रनिंग है।

वैसे बारिश-वारिश पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। टीन वगैरा है तो कवर हो जाएगा आराम --

क्योंकि बंदे भी बहुत सारे है और भीड़ भी काफी सारी लगी हुई है। तो देखते हैं।

काफी दिन हो गए वैसे तो।

हाँ यार घर के पीछे जो बाग है वहां पर अभी एक बगीचा खुला है।

बिन्ना यार पेड़-पोधे मतलब अच्छा बेच रहे है।

तो मैं उसके आराम से जब हम वर्क पे जाते हैं तो मैं उसके तीन से चार चक्कर मार लेता हूं फिटनेस के --

आज भाई आजइयो मेरे भांजे का बड्डे है।

हमारे तो साली इतनी गंदी रहती है भाई ना तो चेयर साफ होती है ना कुछ तेरे यहाँ का बोर्ड भी अच्छा है तेरे यहाँ का व्हाइट बोर्ड है ओर ब्लैक भी है हमारे यहाँ तो ब्लैक बोर्ड ही है आज भी चोक से ही काम होता है।

क्योंकि अपने पास बाइक तो है नहीं फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है शायद इसमें ऑटो में कुछ दिक्कत हो गई है।

लोग वहाँ नाहैंगे और चील काटेंगे मतलब इन्जॉय करेंगे यार बोहोत दिन हो गए यार मस्ती करे हुए। कल चलते है घूमने मेने देखा --

नहीं कपड़े तो अच्छे है टी-शर्ट भी प्यारी है कपड़ा देखेगा ना इतना प्यारा है टी शर्ट का मतलब इतना अच्छा फेवरिक है।

अरे हाँ हम जो रात होटल मे रुके थे।

और थोड़ा नहायेंगे भी पूल वूल तो होगा ही वहाँ पे । वहाँ पे इन्जॉय करें --

गाड़ी सर्विस करानी है बहुत टाइम हो गया यार गाड़ी दिक्कत दे रही है गाड़ी सर्विस कराएंगे आज --